जिस मूर्ति के नीचे एक बॉक्स रखे गए हैं बॉक्स में लिखा हुआ है नमो बुद्धे जय भीम जय भारत।

उ यहाँ पे बहोत सारे छोटे-छोटे कार बाइक्स रोबोट गेम --

जैसे कि हम देख रहे हैं।

यहां पे एक बड़ी सी मंदिर दिखाई दे रही है।

वो व्याम करते हुए नजर आ रहे हैं।